आगे की तरफ खाली मैदान है और ग्रीन कलर की ग्रीन टी दिखाई दे रही है फ्लावर दिखाई दे रहे है।

कलर्स की छत दिखाई दे रही है। आई.सी.आई.सी. का बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है साइड में ईंटो का कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक रोड सा बना हुआ है।

यह एक खाली मैंदान है जिसमे ग्रीन टी दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ --

किसी में मिट्टी दिखाई दे रही है और किस्में किसी पिक्चर में ग्रीन कलर के घास लगे दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में सामने की तरफ एक स्टेशन दिखाई दे रहा है। जिस पे बोर्ड लगा हुआ है और स्टेशन का नाम लिखा है हाजारीपुर जंकशन ।

उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है ऊपर प्लेट बोर्ड लगी हुई है जिसपे शोरूम का नाम लिखा हुआ है।